आदमी का पीछे एक बड़ा सा पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

घर को ब्राउन कलर से पेंट किया गया है।

पीछे में बहुत सारा पहाड़ भी दिख रहा है।

दो घर भी दिखाई दे रहा है।

साथ में एक आदमी भी दिख रहा है।

कुछ आदमी के चेहरा ब्लर किया गया है।

अलमारी का अंदर बहुत सारा बॉक्स भी है।

ऊपर में स्ट्रीट लाइट जल रहा है।

बहुत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।

दुकान का ऊपर वायर भी दिखाई दे रहा है।

ये एक ऑर्नामेंट्स का दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारा मूर्तियां है।

दीवार का कलर येलो और ग्रीन से पेंट किया गया है।

पीछे का दीवार में लाल और सफेद रंग का ईटा डिजाइन किया गया है।

नदी का सामने मे कुछ काठ रखा हुआ है।

मकान का सामने एक बड़ा सा पेड़ भी है।

यह एक बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहा है। जिसमें छे हिस्से का दुकान दिखाई दे रहा है।

एक मकान येलो रंग का है एक मकान सफेद रंग का है।

चारो तरफ बड़े बड़े पेड़ और जंगल भी दिखाई दे रहा है।

यह एक डुकान डिखाई रहा है जिसमें बुक्स भी दिखाई दे रहा है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक समान भी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी भी दिखाई दे रहा है जिसका चेहरा ब्लर किया गया है।